काफी अच्छी मंदिर यहाँ पे झंडा जय श्री राम का झंडा लगाया हुआ है | हरे भरे पेड़ पौधे भी है आप देख रहे है बहुत अच्छे से बनाया हुआ है देखने में काफी अ अच्छे लग रहे है पेंट भी बहुत अच्छे से किया है।